ए कंप्यूटर क्लासेस के मैं एंट्रेंस को देखने को मिलती है इस कंप्यूटर क्लासेस का नाम लखोटिया कंप्यूटर सेंटर यानि एल.सी.सी. --

यह बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और प्रसिद्ध --

फोटो ले गई है जो कि बाहर की नजारे को दिखाता है जहां बाहर की --

पाइप से पेड़ पौधों को पानी दे रहे है जिससे वह बड़े और --

जिनकी वस्त्र रखी गई हैजो जिनसे उन्हें कोई छूना ना सके उनका कांच से पर्दा करदे।

अरे ज्यादा सुंदर बिल्डिंग देखने को मिलते हैं या बिल्डिंग देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है यह पीले कलर की है लाल कलर की है शायद यह स्कूल या कॉलेज होंगे है जमीन पर बिट लगाए हुए है जो कलर है।

तीन बसें यहां पर खड़े --

यहां से लोग चढ़ते हैं एक तरफ से और एक तरफ से दूसरी और उतरते हैं यह सुबह का समय होगा जब की यहां पर आदमी नहीं गए होंगे एवं बहुत सारे कुत्ते सोए हुए हैं।

यह यह ऊंचा है एवं इस पर बहुत सारे सिग्नल्स के लिए प्लेटें लगवाई गई।